जो बीच में बैठा है उसने स्काई ब्लू कलर की टी-शर्ट पहना है और जो ओ-ओ राइट साइड में बैठा है उसने क्री --

यहाँ पर बोहोत सारे बोरे रखे हुए है और ये एक सब्जी की शॉप है और यहाँ पर ग्रीन ग्रीन सब्जी दिखाई दे रही है स्पष्ट रूप से टमाटर दिखाई दे रहा है।

ये हबाईअड्डा है जिसमे ऐरोप्लेन खड़ा हुआ है ऐरोप्लेन पर्पल कलर का है येल्लो कलर की पट्टी है और आधा व्हाइट कलर का है।

मैदान है यहाँ पर बहुत सारे बच्चे खेल रहें है और इन्होंने हरी कलर की टी-शर्ट ऑरेंज कलर की टी-शर्ट और स्काइ ब्लू कलर का टी-शर्ट पहना हुआ है।

मैदान हैं मैदान में दो लोग दिखाई दे रहें हैं मैदान में घास कम दिख रही हैं आगे की ओर और पीछे की ओर घास दिखाई दे रही है हरी-हरी।

बड़े-बड़े पेड़ घने-घने दिखाई दे रहे हैं और अ सुनसान दिखाई दे रहा है एकदम मैदान बिल्कुल कच्चा है पक्का नहीं --